और पीले और वाइट कलर का पुता हुआ है। बहुत सारी कार खड़ी हुई है वाइट कलर की रेड कलर की।

पीले कलर के बहुत सारे नीचे फूल पड़े हुए है एक अंकल --

बर्निया रखी है उसमे बिस्कुट रखे हुए है यह कॉफ़ी का स्टाल लगा हुआ है सामने एक अंकल बैठे है वह मास्क लगा कर बैठे हुए--

उसमे बहोत सारी लाइट लगी हुई है खम्बे लगे हुए है सरिये लगे हुए है ग्रीन कलर का यह पूता हुआ है।

बहोत सारे अंकल खड़े हुए है बहोत सेल्फी ले रहे है हँस रहे है बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है।

एक अंकल खड़े है पटिया लगा है नीचे बहुत सारा कचड़ा पड़ा हुआ है।

एक शटर लगा हुआ है एक बिल्डिंग बनी हुई है।

एक वाइट कलर की कार खड़ी है बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है वाइट कलर की उसमे बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है।